रेड कलर से डिजाइन डला हुआ है एक झंडा लग रहा है पेड़ों के बीच में से और--

एक जाल है जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है उसका गेट वो तो तीनों साइड इसके बाउंड्री बनी हुई है प्लॉट के।

स्नेक बार लिखा हुआ है रेड कलर के इस स्टीकर के ऊपर वाइट कलर से--

तो कुछ खड़े हुए हैं कुछ दुकान के अंदर खड़े हैं कुछ एक आदमी यहां खड़ा है वाइट कलर की दाढ़ी है इनके --

की लेडीज खड़ी हैं साड़ी पहनी हुई जिनके पीछे रेड कलर का मैट बिछा हुआ --